यहाँ पे काले काले रंग की गाय दिख रही है। जो नाद में हरा चाराघांस खा रही है। इसके जो है गले में रस्सी बंधी हुई है।

और कुछ लोग जमीन पर बेठे हुए हैं कालीन के ऊपर। देखने में काफी अच्छा लग रहा है।